इस चित्र मे एक पेट्रोल टेंक दिखाई दे रहा है जिसकी छत पर लाल जालर दिख रही है।

चित्र किसी सुंदर मंच का दिखाई दे रहा है जहा एक सोफ़ा रखा दिखाई दे रहा है।

ये चित्र किसी हॉल का दिखाई दे रहा है जिसमे वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे है।

हरे पेड़ दिख रहे हैं सफेद काला आकाश दिख रहा--

उपर छत दीवार पर एक ऐ_सी दिख रहा है गुलाबी बोर्ड दिख रहा है।

चित्र मे एक बड़ा तालाब दिख रहा है तालाब का पानी नीला दिख रहा है एक नाव दिख रही है।

चित्र संध्या के समय का दिख रहा है एक तालाब दिख रहा है जिसमे कई नावे दिख रही है।

आस पास हरे घने पेड़ दिख रहे है आकाश दिख रहा है।

कुछ टापू दिखाई दे रहा है सामने आकाश मे सूरज दिख रहा है कई रंग दिख रहे हैं।

ये किसी भोजनालय का दिख रहा है जहा मेज़ कुर्सियाँ लगी दिख रहीं हैं।

लोहे की जाली का दरवाजा और हरे पड़े आकाश दिख रहा है।